कि दो व्यक्ति अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाने आए हुए हैं।

एक डिजाइनिंग टेबल दिखाई दे रही हैं।

कैटरिंग वाले बाहर का नजारा देख रहे--

यह रोड की तस्वीर है। रोड पर कुछ गाड़ी वे--

कुछ वाहन खड़े दिखाई--

तथा पेड़ का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है।

यह एक जिम --

टाइजर दिखाई दे रहा है।